एक शोरुम है उसमें दो हवाई जहाज --

एच फोर घंटा है टंगा हुआ है बहुत सारा हवाई जहाज हैं।

बस स्कूटर है आदमी है बहुत सारा इसके नीचे चलता है।

दो-तीन आदमी पीछे खड़ा हुआ बैठा हुआ है।

एक ग्राउंड बड़ा-सा बहुत बड़ा ग्राउंड है।

अ बहुत बढ़िया इ घर है घर के बगल में घास वृछ सोफा उआ है।

तीन खिड़की है दो पेंट हो चूका है एक खिड़की बचा हुआ है।

अंछे एगो अदमी खड़ा है ऊपर भी है च --